बरे अच्छे लग रहे हैं केक है लम्बा है लम्बाई है।

है अच्छा लग रहा है पैखाना वाला है।

और पूरा गेट पर लगा है बारात का है मोटरसाइकिल लगा है।

घर लग रहा है अच्छा लग रहा है और यहां में और दुकान है--